इस चित्र में बहुत से आदमी और कुछ महिलाएं खड़ी हुई है।

और ऊपर छत में कुछ हरे लाल रंग की लाइट भी जल रही है।

इस चित्र में एक मैडम और कुछ उसके पीछे बच्चे डांस सीख रहे हैं।

और उन पर दो आदमी बैठे हुए हैं।

और ऊपर पर एक पंखा भी लगा हुआ है।

और दो मैडम सामने बैठी हुई है।

और उसके पीछे कुछ मशीन भी खड़ी हुई है।

और एक लाइट की केबल भी दिख रहा है।

और एक दो भैंस गाय वहां पर घास खा रही है।

इस मदरसे में हरे कलर का और सफेद कलर का पेंट हो रखा है।

और यहां पर बहुत सारे पेड़ भी खड़े हुए है।

यह एक भारतीय डाक ए_टी_यम हैं।

और एक बाइक भी खड़ी हुई है और एक लोहे की ग्रिल भी दिखाई दे रही है।

और उसके बाहर एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

इस चित्र में बहुत से बच्चे और कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

जैसे कुर्सी और काउंटर और शीशे भी लगे हुए हैं।

और बाहर बहुत से पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लाइटें भी जल रही है।

और एक कांटा भी रखा हुआ है।

और कुछ साइड में पेंटिंग भी की गई है दीवार के ऊपर।

और कुछ बाहर खिड़की लगी हुई है इसमें हरे हरे हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक जिम की दुकान है।

और लाइट की रोशनी भी आ रही है।

और कुछ बड़े बड़े पिलर भी खड़े हुए है।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

यह एक स्कूल की क्लास है इस क्लास मे बहोत सारी लड़कियां मेज़ की सीटो पर बैठी हुई है।

और कुछ पंखे भी लगे हुए हैं और पीछे एक खिड़की भी है।

और साइड में एक काले कलर की कार भी खड़ी हुई है।

और दो तीन बाइके भी खड़ी हुई है।

और एक लोहे का खंबा भी खडा हुआ है।